ई बस अड्डा हउए और बस खड़ा बा और आदमी जाता लाइन से टिकट कटावे।

चार गो लईकी बाली स और पूरा ई कुस् बढ़िया सुंदर बनवले बाली स। चार-पांच कलर से रंगल बा। जग लउकता। लईकी खाड़ा बाली स।